यह एक डैम है इसका मुख्य कार्य होता है पानी को एकत्रित करना बाढ़ को नियंत्रित करना।

उपयोग किया जाता है और यहां पर बहुत ही हरियाली दो बादी का विस्तार किया गया है।

यह एक बड़ी मात्रा में गोदाम है यहां पर हमें अनेक प्रकार की खाद्य पदार्थ देखने को मिलती है।

पढ़ने को मिलती है और ये सुविधायें सभी प्रकार से सभी व्यक्तियों को उपलब्ध करवाई जाती है।

वर्तमान समय में अनेक प्रकार की ट्रेनों का भी विकास हो चुका है।

और इस पत का समय समय पर निरीक्षण भी करना चाहिए।

यह एक सलून की दुकान है जहां विभिन्न प्रकार की सौंदर्य सुविधाएं प्रदान की जाती है।

यह एक नाई की दुकान से ज्यादा व्यापक है जहां हेयरकट के साथ साथ हेयर स्टाइलिंग --

एक मानव निर्मित जल मार्ग है जिसका उपयोग पानी को एक स्थान से --

बड़े और अधिक समय तक जीवित रहने वाले होते हैं जिनमें एक मजबूत तना होता है।

यह घर के पास या किसी सार्वजनिक स्थान पर हो सकता है इसका उपयोग मनोरंजन सौंदर्य शास्त्र और खाद उत्पादन के लिए किया जाता है।

पेंटिंग दृश्य कला का एक रूप है।

ये एक एलुक्ट्रॉनिक मशीन की दुकान है एलुक्ट्रिनिक सामान में विभिन्न प्रकार के उपकरण शामिल होते हैं।

एक सार्वजनिक कार्यक्रम है जो किसी विशेष अवसर घटना या परंपरा पर जश्न मनाने के लिए आयोजित किए जाते हैं।

चाय और अन्य पेय पदार्थ के साथ साथ नाश्ता व स्नेक्स का आनंद लेते --

जो हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है।

इसे भगवान कृषण की राज्य की राजधानी माना जाता है ये चारधाम और शपत पूरी का भी हिस्सा है।

घरेलू कोई भी लाइट से संबंधित ऐ सुविधा के लिए इस विभाग से सीधा संपर्क किया जाता है।